ऑफिस के बहार कुछ गमलो में पेड़ पौधे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आस-पास कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सड़क के पर कुछ आदमी आते-जाते नजर आ रहै है ।

यह चित्र घर का है जो कि सामने घर के अंदर कुछ कंप्यूटर दिखाई दे रहें हैं और एक पियानो दिखाई दे रहा है और एक आदमी पियानो पर कुछ काम करते हुए नज़र आ रहा है।

यह चित्र किसी पहाड़ी एरिया का है क्योंकि सामने एक पहाड़ी दिखाई दे रही है।